जैकेट है पेंट है आदमी के हाथ में हेलमेट है।

एक आदमी है | उसके मुंह पर मास्क लगा है | उसके हाथ में इस्त्री है इस्त्री कर रहा है कोट पर और टेबल है बोर्ड है बैलूनस हैं |

फूल है रेड कलर का पिंक कलर का वाइट कलर और येलो कलर फूल है मालाएं हैं |